यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है लड़का कांच में सेल्फी ले रहा है अपने फ़ोन से।

यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है आदमी एक मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ है।

दो बच्चे टेबल पे बैठे हुए हैं जोकि कुछ पेपर से बना रहे हैं।

यहाँ पे एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है एरोप्लेन इंडिगो कंपनी का है।

पेड़ काफ़ी ज्यादा संख्या में --

खेत में एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मशीन है।

ये काफ़ी ज्यादा घने पौधे हैं।

यहाँ एक किराने की स्टोर हैं।

मकान में चार मजदूर लगे हुए हैं।

दूसरा किसी को देख रहा है।

कुछ लोग पीले वस्त्र पहने हैं। कुछ लोग काले वस्त्र पहने हुए हैं।

उनकी टीचर उन्हें निर्देश दे रही है।